यहाँ पे कोई बच्चे नज़र आ रहे है और एक आदमी नज़र आ रहा है जो ट्राफिक में रुका हुआ है और कुछ दो--

और यहां पे एक बड़ी सी ए_सी लगी है जो दुकानवालों के लिए ठंडदायक काम करेंगी।

ये एक स्टोर मार्केट है और यहाँ पर एक बोहोत सारे खिलोनो और टॉयज की दुकान नज़र आ रही है और यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे से बेग और टेडीस --

और बोहोत सारे खिलोने नज़र आ रहे है और बड़े बड़िया से एक कुर्सी और कुछ घड़िया नज़र आ रहे है और कुछ शोपीस वगेरा बोहोत अच्छे से लगाया हुआ--

मिस्त्री अभी अराम कर रहे है और यहाँ पे कुछ मिस्त्री उपर चढ़ कर काम कर रहे है।

और ये स्टॉल्स बोहोत खुबसूरत नज़र आ रही है नीले नीले कलर की पोस्टर्स भी ओइल के डब्बो को लगाया रखा है और बोहोत ही शानदार नज़र आरा है।

ये किसी फेमस रेस्टोरंस का व्यू नज़र आ रहा है जहा हेन्डवोस के लिए दो रखा गया है और कुछ फिश टेंक भी रखे है बोहोत खुबसुरुती से नज़र आ रहे है और--

तो यहाँ पे दो मिरर भी लगाया हुआ है और एक बड़ी विन्डो नज़र आ रही है जिसमे एक लड़का सेल्फी ले रहा है।

एक लम्बा सा दरख्त है बोहोत ही प्यारा नज़र आ रहा है और दो खम्बे है और कुछ ट्रांसफॉर्मल (ट्रांसफार्मर) लगे हुए है।

यहाँ एक लड़की डांस कर रही है और वो उसने लालचा पेहना है लाल कलर का और उसने स्कर्ट पेहना है ब्लू कलर की--

ये बाल बहुत घने नजर आ रहे और वो वहां पे नाचते वक्त शूज पहनी है।

और उसके सामने कुछ कपडे भी पड़े हुए है और उसको उपर उड़ाया है बोहोत सारी चम्किया और ये एक डांसर नज़र अ रही है।

यहां कुछ बड़े बड़े से बोर्ड नज़र आ रहे है और यहां पे कुछ बहोत बड़े बड़े--

और घर के उपर एक टंकी वाइट कलर की नज़र आ रही है।

ऑटो चलाती हुई बाइक चलाती हुई और कुछ स्कूटी पे सवार नज़र आ रहे है।

में एक भालू नज़र आ रहा है और वो भालू मीटल से बनाया हुआ है और वो भालू बोहोत अच्छे से बनाया गया है और उसे--

सीमेंट के वॉल पे रखा गया है और उसके आजू बाजू कुछ दरखत वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और--

ओरतो ने रेड कलर की साड़ी और ब्लू कलर की साड़ी कॉम्बिनेशन करके पेहना है और बोहोत --

अच्छे से चुटी बनाया रखा है और गेहने वगेहरा पेहने है और ये पूरी--

और बोहोत सारे टेडीस वगेहरा भी नज़र आ रहे है और वो बोहोत कुछ बोहोत बड़े है और कुछ बोहोत छोटे है और--

बोहोत मीडियम है और बच्चो के खिलोनो के लिए भी बोहोत से अवेलेबल है और बोहोत --

ये एक समंदर का बिच है जहा पे कुछ लोग एन्जॉय करने के लिए आये है और कुछ लोग यहाँ पे उसमे स्विमिंग कर रहे है।

ये एक नदी से आए हुआ झरना है और यहां पे बड़े बड़े से स्टोंस नजर आ रहे हैं।

और ये जर्ना स्टोन से कटते हुए पानी निकल रहा है और यहाँ पे कुछ बोहोत से बड़े बड़े से दरख्त नज़र आ रहे है और जो बोहोत ही घने --

ये एक मेज का होटल नजर आ रहा हैं जो बहोंत से कुर्सियां वगैरा और टेबल्स वगैरा लगाए हुए हैं जो कस्टमर्स के लिए--

अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है और उसके सामने कुछ सोस की बोटल्स भी रखी हुई है और पानी की बोटल्स भी रखी हुई है।

और यहाँ पे हेंडवोस के लिए भी बेसन लगाया हुआ है और एक आदमी यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा--

क्लास नजर आ रही है यहां पे बहोत से बच्चे यहां सर को ड्रांस करते हुए देख रहे हैं और वो खुद कर रहे हैं।

और यहां पे सर में वाइट कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी है और उनके साथ एक मैडम भी है जो उन्हें डांस सिखा रही है।

ये एक ग्राउंड प्लेग्राउंड दिखरा है यहाँ पे कुछ लम्बे लम्बे से दरख्त नज़र आ रहे है और लम्बी लम्बी सी बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही है।

और यहां पे हमें एक बहुत सारा से बहुत अच्छे से सनसेट नजर आ रहा है और ग्राउंड में कोई भी खेल नहीं रहा है।

ये एक गली का नजर आ रहा है एक गली नजर आ रही है जहां पे घरें नजर आ रहे हैं।

और घरो के सामने एक कार नज़र आ रही है और एक बाइक नज़र आ रही है और--

कुछ दरख्त नज़र आ रहे है और उनको अटेच वायर्स भी नज़र आ रहे है।

शॉप नज़र आ रही है जिसका नाम शाहू इलेक्ट्रिकल शॉप नज़र आ-आ रहा है।

और यहाँ पे कुछ कंटेनर्स भी रखे हुए है और कुछ पेन के बॉक्स भी रखे हुए है।

हमे यहाँ पे एक दूकान नज़र आरी है जिस दूकान का नाम भारत साडी सेण्टर है और उसके सामने एक आदमी अपनी बाइक --

पार्क कर रहा है और उसके दूकान के सामने हमें बोहोत सारी गाड़िया साइकल्स बाइक्स वगेहरा नज़र आ रही है।

घूम रहे हैं और कुछ लोग यहां पे बाइक पर भी बैठे हुए हैं।

और यहां पे कुछ बॉयज नजर आ रहे हैं और वो पानी का इंजॉय कर रहे हैं पानी में तीर रहे हैं पानी में खेल रहे हैं।

और यहाँ पे बड़े बड़े से पत्थर है जिस तरह से पानी आ रहा है बोहोत ही खुबसूरत नज़र आ दिख रहा है।

ये एक होटल का सीन नज़र आ रहा है जिसमे हमे एक आदमी फ्रिज से पानी निकालता हुआ नज़र आ रहा है।

और यहाँ पे एक टि_वी भी नज़र आ रही है और दो यहाँ पे एने लगे हुए है और यहाँ पे दो बेसन भी हेन्डवोस के लिए लगे हुए है।

मराठी सीख रहे हैं और बहोत सारे बच्चे भी नजर आ रहे है जो व्हाइट कलर का--

यामा यहां हमें कोटक महिन्द्रा बैंक नजर आ रहा है यहां पे एक चेयर्स भी है और ये बैंक --

इन्फो बी बॉय कट लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े से सीडिया भी नज़र आ रही है।

भी नज़र आ रही है कुछ बॉयज यहाँ पे वर्कआउट कर रहे है और कुछ बॉयज यहाँ पे ठेरे हुए है।

और इन्हें बेच रहा है और एक बाउल नज़र आ रहा है और ब्लैक कलर की केरिबेग्स भी नज़र आ रही है और ग्रीन कलर का यहाँ पे--

टेम भी नज़र आ रहा है और ब्लैक कलर की चप्पल्स भी नज़र आ रही है।

पर्दा लगाया दो पर्दे लगाये हुए है जिसका कलर पर्पल कलर है।

ये एक बसटेन है में दो तिन लोग नज़र आ रहे है और एक बड़ी सी बस नज़र आ रही है जो बिलकुल खाली है बस का कलर --

वो जा रही है और एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और बिल्डिंग के सामने भी कुछ लोग नज़र आ रहे है।

यहाँ पे हमे एक डक नज़र आ रहा है जो पानी में है।

और एक लेडीज पेशेंट भी नज़र आ रही है और यहाँ पे कुछ--

और इसके बाहर हमे एक डसबिन भी नज़र आ रहा है और हमे एक शॉप के अन्दर केक्स भी बोहोत सारे नज़र आ रहे है।